हुडा व्हाइट क्रो नामक साइनेज बोर्ड लगा हुआ है।

बाहर एक मैनिक्विन को कोट पेंट पहनाया है।

सामने पिलर्स के पास बहोत सारे झूले झूलते हुए नजर आ रहे हैं।

घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ व्यक्ति आमने सामने कुछ पत्तेदार हरी सब्जियां बेचते हुए नजर आ रहे हैं।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

बाहर एक ए_सी लगा हुआ नजर आ रहा है।

जहां एक छोटासा घर भी है।

चित्र में एक व्यक्ति कोट पहने एक कुर्सी पर बैठा है।

एक होटल का रिसेप्शन टेबल नजर आ रहा है।

एक छोटी सी लाल बिल्डिंग है।

इस चित्र में सामने एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।